और बोले तो साइकिलें भी हैं पेड़ भी हैं छोटे-छोटे औ--

लेडीज़े भी हैं और कुर्सी भी रखी हुई है अम्म --

और यहां लाइट भी लगी हुई है। लाइट का कलर येलो है। वायर्स है।

यहां मेरे सामने बड़ा सा हॉल है जहां आगे ऑटो खड़ा है और साइकिलें भी हैं। बॉक्स रखें हैं। अम्म बॉक्सों का कलर --

और यहां गाड़ियों का कलर ब्लैक है व्हाइट है और लोगों के कपड़ों का कलर व्हाइट है येलो है।